ये जो रूम में जो बहुत सारा कलरफुल बैलून को लगा के है।

तस्वीर में हमको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

ये जो दुकान है उसमें सामान रखने के लिए जो सुंदर सा बना के है।

और फादर के कोने में दो लड़का है।

इस तस्वीर में हमको एक स्टॉल दिखाई दे रहा है।

इनमें लाइट्स ऑन करके है।

और ये जो लड़की है वो लोग जो ड्रेस पहन के हैं।

सामने में बहुत ज्यादा बिल्डिंग ये सब है और पेड़ भी है।

और बीच बीच में जो लगाकर के हैं।

ये ट्रैक्टर है उसके ऊपर में जो सोफा का ऊपर में कोई वी_आई_पी बैठ के हैं।

काला रंग का पेंट पहनके हैं।

यहां अंदर में बहुत ज्यादा को रखा हुआ है।

यहां आंटी बड़ा लोग बच्चा लोग जो सब एंजॉय कर रहे हैं।

इस तस्वीर में हमको एक शोरूम दिखाई दे रही।

इस शोरूम का कलर जो सफेद है।

दरवाजा के सामने एक अंकल है।

वो ऊपर में जो एक गड्डी है जिसका चक्का को निकाल दिया गया।

उसमें एक ब्लू कलर का चेयर रखे हैं।